मुझे टीन से बनाया गया एक शेल्टर दिख रहा है जिस पर गोलगोल एक ब्लैक कलर का कुछ दिख रहा है।

और यहां पे मुझे एक ब्लू कलर का गेट दिख रहा है छोटा सा।

और मुझे वहां पे ए दुप दिख रहा है।

पीछे पर बहुत सारे घर बड़े बड़े पेड़ लगाया हुआ है।

मुझे इस तस्वीर पर बहुत सारे सफेद रंग के मुर्गी दिख रहे है।

और पीछे पर मुझे फूल के डेकोरेशन दिख रहे है।

और वहां पर बुद्धिज्म का फ्लैग भी लगाया गया है।

और पीछे पे मुझे पहाड़ कई हरे भरे पेड़ दिख रहे हैं।

मुझे इस तस्वीर पर एक रूम दिख रहा है जिस पर पर दो सोफा काले कलर के है।

और दीवार का कलर येलो है और सीलिंग का कलर व्हाईट हैं।

मुझे यहां पे परदे भी दिख रहे हैं जिसका कलर येलो कलर है।

मुझे इस तस्वीर पर एक सूखा सा रास्ता दिख रहा है।

रास्ते के अंत पर एक बड़ा सा गेट है जिसपर बलूर घाट एयरपोर्ट लिखा हुआ है।

जो चश्मा पहना हुआ है और उसका माथा गंजा है।

और एक का है फाइव फाइव एट फाइव --

मुझे इस तस्वीर पर बहोत सारे दुकान दिख रहे है।

तो दुकान पर बहुत सारे फूल के माला लटकाए हुए है।

आगे के ऑटो के पीछे अतुल लिखा हुआ है।

येलो टी शर्ट और उसकी शक्ल ब्लर किया गया है।

और मुझे यहाँ पे मॉनिटर दिख रहा है और एक की बोर्ड दिख रहा है और एक माउस दिख रहा है।

पार्क पे खेल रहे हैं और मुझे पीछे हरियाली ही हरियाली दिख रही है।

मुझे इस तस्वीर पर बहुत सारे लोग पानी पर ब्रिज के नीचे दिख रहे हैं।

और नीचे पर बहोत सारे लोग दिख रहे हैं।

सारे लोग माथे पर एक टोपी पहन के रखे हैं।

मुझे इस तस्वीर पर बहुत बड़ा जंगल दिख रहा है।

और बुक स्टोर के बाहर मुझे एक लड़का खड़ा दिख रहा है।

और बुक स्टोर के अंदर मुझे एक लड़की दिख रहा है।

कोई घर ब्लू कलर का है कोई यलो है तो कोई व्हाइट कलर का है।

मेज पहन कर खड़ा हुआ है।

कंप्यूटर भी रखा हुआ है और वहां एक आदमी बैठकर कंप्यूटर चला रहा है उसका शक्ल को ढक दिया गया है।

पीछे मुझे एक बंबू का घर भी दिख रहा है।